इसमें चर्च के पादरी और अन्य सदस्य भाग दे रहे हैं।

और पीछे में एक चर्च दिखाई दे रहा है।

दीवार की सजावट पर दो खूबसूरत फूलों की पेंटिंग टंगी हुई है।

जिससे प्रतीत होता है कि यह एफ_एम स्टूडियो है।

इस तस्वीर में एक बस डिपो या बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।

कई बैंकों कंपनियों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं।

छात्रों की उपस्थित सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए परीक्षा दे रहे हैं।

इस तस्वीर को देखकर ज्ञात होता है कि ये एक किराने की दुकान है।

जिसमें हल्के नीले रंग की लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

साइन बोर्ड पर लिखा है कि यह स्थान खाने संगीत और काफी के लिए जाना जाता है।

कपड़े का स्टॉक रैंक और फर्श पर रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए हैं।

इस भूमि में उपकरण लोग और इमारतें दिखाई दे रही है।

छत पर नीले रोशनी आरामदायक बैठने की व्यवस्था और फौजी माहौल इसे आकर्षक बनाते हैं।

खाना प्लेट में सुगंधित और मसालेदार बिरियानी परोसी गई है जिसमें सब्जी या मांस हो सकते हैं।

ये तस्वीर एक दुकान स्टोर के बाहर रखे गए बच्चों के खिलौने और साइकिलों को दिखा रहा है।

छोटी मोटरसाइकिल जैसे खिलौने और दीवार पर लटकी हुई साइकिलें दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर को देखकर ज्ञात होता है कि ये तस्वीर एक मंदिर की प्रतीत होती है।

इस तस्वीर को देखकर ज्ञात होता है कि ये एक स्कूल कॉलेज का मुख्य प्रवेश द्वार की है जिसका नाम सेंड पॉज कॉलेज है।

तस्वीर में मुख्य गेट बंद दिखाई दे रहा है।

पुल की बनावट पुल लोहे की संरचना का है जो रेलवे ट्रैक या सड़क के लिए इस्तेमाल होता है।

इसकी डिजाइन मजबूत और टिकाऊ है जिसे भारी वाहन भी जा सकता है।

मेज का रंग आसमानी है सामने एक सॉकेट दिखाई दे रहा है।

अध्ययन कक्ष का द्वार खुला हुआ है।

तस्वीर में निम्नलिखित उपकरण दिखाई दे रहे है जैसे कि ट्रेडमील इलेक्ट्रिकल स्टेशनरी बाइक ।

नारंगी और पीले रंग का फूल आमतौर पर पूजा पाठ और उत्सव में प्रयोग किया जाता है।

जिसके पीछे एक सफेद रंग का बहु मंजिला इमारत दिखाई दे रहा है।

जहां लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं।